गुरुद्वारे के अंदर का व्यू बहोत ही अच्छा--

तारों के खंभे हैं उसपे बड़ी बड़ी तारे जा रही है सामने ही कुछ--

अच्छे और सुंदर फूल लगे हुए जोकि पीले और लाल रंग के हैं कई फूल जोकि सफेद रंग के हैं सामने--

जिसके की पानी की पाइप जो कि पार्क को लगा रहे हैं पानी जो की पार्क को लग रहा है।

पार्क में कई कुर्सियां और बेंच लगाए गए हैं बैठने के लिए जिसपे की कुछ लोग बैठे हैं सामने कुछ झूले भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहोत ही अच्छी पार्क की तस्वीर है जिसमें की बहोत सारे झूले लगे हुए हैं।

और उसी के साथ एक झोपड़ी बनी हुई है जिसमें कि कुछ--

डांस अ कर रहा है वो नीचे बैठा है और उसी के पीछे बहुत सारे--

साथ में ही कुछ झूले भी लगाएं गए है जहां पर एक पार्क है।

जो कि उनको देख रहे हैं औ साथ में ही कुछ--

मेडिकल की दुकान भी है उसके ऊपर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

जहां पर अलग-अलग तरह के कपड़े लगे हुए हैं।

और स्कूल के ऊपर एक काले रंग की पानी की टंकी भी रखी हुई है और सामने एक गाड़ी भी दिख रही है।

स्पीच दे रही है उसी के साथ कुछ लोग भी खड़े हैं।

सामने ही एक सड़क दिखाई दे रही है जिसपे की बहुत सारी गाड़ियां चल रही है और बाहरी एक --

एक क्यारी भी बनाई गई है जिसमें कि लोग बैठे हैं और साथ में ही फूल बहोत ज्यादा लगे हुए हैं।

और उसके साथ ही कुछ लोग खड़े हैं और साथ में ही कुछ लोग--